कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और कुछ लाइट दिखाई दे रही है कुछ टावर दिखाई दे रहें हैं और कुछ पत्थर दिखाई दे रहें हैं।

पर आसमान का कलर ग्रीन ब्लू और वाइट दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर वाइट रेड पिंक दिखाई दे रहा है।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

कई सारा फर्नीचर दिखाई दे रहा है। एक फैन दिखाई दे रहा है एक कैल्क्युलेटर दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान का कलर पर्पल ब्लू ग्रे दिखाई दे रहा है और कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ग्रीन ग्रे दिखाई दे रहा है।